दुकान है उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड टंगे हुए हैं उसके नीचे प्रेस मिक्सी --

पेन भी रखा हुआ है जिसके पास एक पानी की बोतल है।

पेट्रोल पंप के बाहर ही एक ऑटो भी खड़ा हुआ है पेट्रोल पंप के बाहर कुछ घर भी दिखलाई दे रहे कुछ सुंदर से प्लांट भी है।

ये जिसके चारों ओर बैलून लगे हुए हैं एक लेडीज दिखाई दे रही है जिसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है।